एक गेस्ट हाउस को दिखाया गया है जिस जहाँ पर एक रेड कलर के बोर्ड में वाइट कलर से सुरुची गेस्ट हाउस लि --

व्हाइट सा दरवाजा भी लगा हुआ है जिसमें गेस्ट हाउस येलो कलर से लिखा हुआ है डिजिटल कैंपस --

लड़की दिखाई दे रही है सामने में कुछ बाइक है और फोर व्हीलर स्कूटी लगी हुई दिखाई दे रही है।

बाइक में ब्लैक कलर का हेलमेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने में एक येलो कलर की बहुत बड़ी सी गेट दिखाई --

हुई है सामने में एक टेबल लगा हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की चादर है अ बिछी हुई है कुछ --

साइड में कॉटन टाइप के बहुत कुछ दिख रहे है सामने में चार पाँच लोग दिख रहे हैं एक लेडीज के फेस को हाइड किया गया --

इसी कंप्यूटर के ऑफिस को दिखाया गया है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट दिखाए जा रहे हैं जो लैपटॉप और कंप्यूटर चलाते हुए दिख रहे हैं।

वह बालकनी जैसा कुछ दिख रहा है नीचे में ब्लैक कलर की चेयर लगी हुई है बैग्स दिख रहे हैं।

किसी टूरिस्ट प्लेस को दिखाया गया है जहाँ पर ही पहाड़ अअ पहाड़ और पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ नीचे से पानी बहती हुई दिखाई --

दे रही है आसपास में बहुत सारे जंगल दिखाई दे रहे हैं कुछ चियरे भी दिखाई --

दे रही है जोकि उल्टी गिरी पड़ी दिखाई दे रही है अ कुछ येलो कलर के टेबल भी दिखाए जा रहे हैं छतरी जैसी दिखाई गई है ब्लू और स्काई --

किसी ऑफिस को दिखाया गया है जहां बहुत सारे केबिन टाइप के दिखाई जा रहे हैं सामने में बैठने के लिए।

क्वयार में लाइट जैसे चलते हुए दिख रहे हैं ऊपर में एक ए_सी लगी हुई दिख रही है कहीं पतले पतले लंबे लंबे से लाइटिंग जै --

एक टेबल को दिखाया गया है जो डाइनिंग टेबल जैसा ब्राउन कलर में दिख रहा है उसके सामने में एक ब्राउन कलर की चेयर लगी हुई है दो ब्लैक और रेड में चेयर लगे हुए हैं।

इसी रूम को दिखाया गया हैं जहां दो सोफे लगे हुएं हैं जिसके सीट व्हाइट कलर की दिख रही है सामने में--

टेबल है जहाँ एक प्लेट रखा हुआ है कुछ डायरी टाइप की भी रखी है कुछ सामानें रखी हुई है पीछे --

परदे व्हाइट और ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं खिड़की व्हाइट कलर की दिख रही है और उसमें काँ --

किसी मॉल या किसी शॉप को दिखाया गया है जिसके ऊपर में --

ब्लैक मिरर पे रेड से कुछ लिखा हुआ है पूरी बिल्डिंग ब्राउन और ब्लैक में दिख रही है।

साइड के बॉर्डर चॉकलेट कलर की दिख रहे हैं सामने में पेड़ भी दिखाए जा रहे हैं सामने से काली सीढ़ियाँ ऊपर जाती दिख --

हुए देख रहे हैं एक सी ग्रीन कलर की सूट पहनी हुई लेडीज व्हाइट पे दिख रही है उसमें ब्लैक कलर के रिबन बंधे हुए हैं नीचे में कलरफुल --

कार्पेट बिछे हुए हैं कही ग्रीन कलर के कार्पेट बिछे हुए हैं कार लाइटिंगे भी दिखाई जा रही--

तो कहीं कच्ची मिट्टी वाली रोड दिख रही ऊपर आसमान दिखाए गए हैं उस ऊपर से वायर जाता हुआ दिखाई दिया है सामने में कुछ अ मैदान को --

अं घेरे हुए दिखाया गया है जहाँ पर एक पोर्टलर बैनर --

कि हुई है येलो कलर में और कुछ ब्लैक और रेड में लिखा हुआ है पास में कुछ बिचाली की झोपड़ी टाइप के भी दि --

उसके बगल में ही एक वाइट कलर का डब्बा दिख रहा है जोकि पर्पल कलर का बोतल रखा हुआ है।

कमाने रखी हुई है नीचे में कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

दिखाए जा रहे हैं सामने में एक चेयर ब्लैक कलर में लगा हुआ है पिंक में येलो में रेड में ब्लू कलर में --

दिखाए गए हैं बहुत सारे टॉयज रखे हुए दिखाई दे रहे हैं डॉल्स रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ अ लटकन भी दिख --

यहाँ ऑफिस के कैबिन हॉल जैसा दिखाया गया है जोकि पूरे ईटे की जैसे डिजाइन वाली की गई है वॉल ऊपर की सीलिंग --

क्वायर स्क्वायर खाँचे में खाली खाली जैसे दिखाई दे रहे हैं ग्रे और व्हाइट में दो --

एप्सन जैसा कुछ बना हुआ है जहाँ कुछ अ पेपर्स व्हाइट कलर के टेबल पर रखे हैं ब्लैक कलर के चियर ल --

हार्डवेयर के दुकान को दिखाया गया है जहाँ पर बहुत तरह के बेसिंस लगे हुए कोमोट पेन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने में --

कैलकुलेटर दिखाई दे रहे हैं कुछ पेपर अअ या पतले से डायरी खुले हुए दिख रहे हैं सामने में कुछ बॉक्सेस टाइप --

रैड रैड से चार खाने दिख रहे हैं उसमें हैंडलें बहुत तरह की लॉकर दि --

कुछ रैड कलर के दो चेयर दिखाए गए हैं कुछ व वॉल पे कुछ कैमरा ती दो तीन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

स्टेट बैंक की ए_टी_एम को दिखाया गया है जहाँ बाहर में बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं सामने बाहर में एक ग्रे कलर में और रेड ब्लैक में --

ए कारपेट है जिसमें वेव वेव जैसा डिजाइन बना हुआ है एक मेहंदी कलर की कारपेट दिखाई गई है।

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे फर्स पे कुछ बिखरे हुए भी कार्पेट्स दिखाई दे रहे हैं।

बास की बनी हुई टोकरी बास्केट पॉट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं एक पतली सी बड़ी सी टोकरी जैसी दिखाई दे रही है।

घर में बास की कुछ पतले पतले से डेकोरेटेड टाइप के फ्रेम जैसे लगे हुए हैं कुछ इ --

सामने की हेडलाइट भी नहीं लगी हुई है पूरे पार्ट्स और टायर वगैरह को खोल दिए गए हैं पीछे का टायर लगा हुआ है।

कैमरा टी _वी जैसे पाँच लगे हुए हैं उसमें बहुत तरह की चीजें रखी हुई दिखाई गई है सामने में कुछ --

एैं बड़े बड़े डब्बे से भी दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के--

को दिखाया गया है जहाँ बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चे लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके सामने में --

हुई है पेंसिल बॉक्स रखी हुई है रेड कलर की पिंक कलर की एक लेडीज है जो मास --

थोड़ा येलो और अअ में दिख रहा है और नीचे की वॉल येलो और रेड में दिख रही है।

बहोत सारी पॉट्स रखी हुई है जिसमें सी ग्रीन पॉट रेड पॉट येलो पॉट ब्लू कलर की दिखाई दे रही है स्टील की कुछ --

अले टाइप की हैंगर जैसी दिखाई जा रही है सामने में कुछ लोग बाइक लिए हुए जाते दि --

दिखाई दे रहे हैं रोड दिखाई दे रहे कुछ पार्ट उल्टे हुई भी दिखाई दे रही है सीमेंट की सीढ़ियों पे लाइन बाई लाइन के पार्ट्स रखे दिखाई दे रहे हैं।

किसी शादी के इवेंट गार्डन को दिखाया गया है जहाँ पर ये पूरा डेकोरेशन किया गया है पूरे पेंडाल --

ओ पिंक और व्हाइट से सजाया गया है ऊपर में आसमान दिखाए जा रहे हैं एक होटल दिखाया गया है।

सामने में कुछ सोअर प्लांट भी लगाए हुए हैं सामने में एक होटल भी दिखाया --

कुछ स्काई कलर के पिलर्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर का सीलिंग टीने के चादर का दिखाया जा रहा है कुछ व्हाइट कलर की भी गाय दि --

दिखाई दे रही है कुछ गाय गंदी दिखाई दे रही है बाहर में--

फहलाए हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो सर पे --

फोल्ड करके रखे हुए हैं कुछ जैकेट्स कपड़े प्लास्टिक में रखे हुए हैं ग्रे कलर में ब्राउन कलर में और कुछ ओपन रखे हुए हैं कुछ हैंगर में टंगे दिखाएं--

गई है टी_वी ऑन दिखाया गया है उसमें बहुत सारे ब्लैक कलर के वायर हैं टेबल के ऊपर बहुत सारी सामान दिखाई गई है।

रखा हुआ दिखाई दे रहा है बोटल रखे हुए हैं सामने में दरवाजे हैं मिरर है--